कुछ कुरते है तो कुछ लेगी हे कुछ प्लाजा टाइप के है यहा पर काफी लाइट भी लगी हुई है वाइट कलर का पेन्ट भी पुता हुआ है।

आसपास कुछ लकड़िया भी रखी हुई है यहा पर एक टीन शेट भी लगा हुवा है गाय के लिए यहा पर एक नशेनी भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहा पर कुछ लोग भी है।

यहाँ पर कुछ पहाड़ टाइप का भी दिख नजर आ रहा है यहाँ पर नीला आसमान और वाइट कलर का भी दिख रहा है यहाँ पर कुछ मिट्टी भी नजर दिख रही है।

यहा पर काफी सारे खंबे लगे हुए है यहा पर काम भी स्टार्ट है यहा पर कुछ छोटे-छोटे पेड़-पोधे है तो कुछ बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जो की हरे कलर का है आस पास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है यहा पर आस पास काफी सारी गो--

यहा पर अ लाइट के लिए खंबे भी गरे हुए है यहा पर बार एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल टाइप का बना हुआ है जहाँ आस- पास काफी सारे पौधे भी है।